ये एक रेलवे स्टेशन है।

यहां पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

पानी बोतल भी रखी हुई हैं।

और एक बोर्ड भी है जिसमें ब्लैक कलर के तार है और एक चार्जर भी है।

उसके बगल में ही जंगला है जिसमें व्हाइट रंग का पर्चा रखा हुआ है और एक चेयर है।

और कुछ शीशे भी लगे हुए हैं।

यहां एक टेंट है और कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

के पास एक लेडीज़ भी खड़ी है।

ये एक मंदिर है जिसके ऊपर रथ बना हुआ है।

जिसके ऊपर व्हाइट कलर के बैनर लगे हुए है।

यहां पे कुछ लेडिसे भी खड़ी है।

और कुछ लोग नीचे भी बैठे हैं।

उस पुतले के पास दो डब्बे हैं और एक कूड़ा दान भी है।

इन बॉक्स के अंदर कुछ जूस की मशीने रखी हुई हैं।

ये एक परचून की दुकान है।

ये एक दुर्गा माता की मूर्ति है। उनके हाथ में त्रिशूल भी है।

ये एक मेज है जिसके ऊपर केक रखा हुआ है।

और एक खंभा है जिसमें लाइट लगी हुई है।

ऊपर कुछ वाइट रंग की लाइट लगी हुई है।

यहां पे कुछ शीशे वाली अलमारी बनी हुई है।

और उसके आस पास हरे भरे पेड़ हैं।

ये एक परचून की दुकान है।

और एक काउंटर भी बना हुआ है।

और एक वाइट रंग का कैप लगाया हुआ है उसके पीछे एक आदमी जा रहा है।

और कुछ बाइक भी खड़ी है।